सड़क है इस सड़क पर बहुत से आदमी आते-जाते हैं यहाँ पर बड़ा सा बिल्डिंग है इस बिल्डिंग को अभी प्लास्टर नहीं किया गया है यहाँ एकतले पर काफी सारे बैलून लगाए गए हैं ।

यहां पर गेट भी लगाया गया है यहां पर दो दुकान भी है यहां पर काफी आदमी सामान खरीदने --